बीच में एक छोटा सा पौधा है और दो--

यहां पर बहुत सारे बाइक दिख रहे हैं एक आदमी है जो पीले कलर का टी शर्ट पहना है उसके पीछे एक डस्टबिन है।

यह केक का दुकान है अंदर में बहुत सारा केक लगाया गया है और बहुत सारा केक आगे शीशा में पैक भी है।

यह एक मंदिर है जो यहां पर माता जी का मूर्ती रखा गया है और ऊपर मे लाइट जल रहा है पीछे की साइड दो फोटो है।

और काउंटर के बाहर एक कुर्सी भी लगाया गया है जो ब्लैक कलर का है और उसी पर एक बैग भी रखा गया है कुर्सी के पीछे कार्टून भी दिखाई दे रहा है।

यहां कपड़ा का दुकान है जो बाहर में एक लड़की का पुतला रखा हुआ है।

और उसके ऊपर एक पंखा चल रहा है पंखा के बगल में एक ए_सी भी लगा हुआ है।

और यहां पर सोने के लिए बेड भी लगा हुआ है।

यहां पे एक रोड के किनारे होटल है मनपसंद होटल रेस्टोरेंट ।

और यहां बहुत दूर में वाटर पार्क लगा हुआ है।

ऊपर से घसने के लिए स्लीपर भी बनाया गया है पीछे के साइड यहां पर पेड़ पौधा भी लगाया गया है।

ये सुबह का टाइम है जोकि धूप सीधा पात्ता पे लग रहा है।

धूप के वजह से पत्ता पीला दिखाई दे रहा है और कुछ पत्ता लाल भी दिखाई दे रहा है।

यह क्लिनिक है इसके ऊपर टाइम देखने के लिए घड़ी भी लटकाया हुआ है।

यहां पे एक रोड के किनारे मोटल होटल है।

पे एक जहाज है और जहाज पे नीले कलर में इंडिगो लिखा हुआ है।